और साइड में एक दुकान है जिस पर एक गेट लगा है जो जाली का है।

पीले हैं और कुछ लाल फूल हैं।

और मिरर के सामने कुछ मशीन रखी हुई है जिम की।

और एक कैलेंडर टंगा हुआ है रैकों के अंदर कुछ सामान पैकेट्स रखे हुए हैं।

और टेंट के पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और साइडों में स्टील के पाइप लगे हुए है।

और उनके मिरर पर अर्पण पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

और साइडों में एक दीवार है इस पर पीला पेंट है।

और उसमें अंबुजा सीमेंट लिखा हुआ है।

और साइडों में थमले खड़े हुए हैं और नीचे कुछ गमले पड़े हैं।

और ऊपर छत पर टी टीन लगी हुई जो काले कलर की है।

कुछ पक्षी सफेद है और अलग अलग कलर के हैं।

जिस पर एक काला बोर्ड है जिस पर द सिटी कैफे लिखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

और ऊपर कुछ मालाएं लटकी हुई हैं पीछे एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ है।

इस फोटो के अंदर बहुत सारे पर्दे हैं।

जो एक इस्टील के पाइप से लगे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई गई है।

जिसमें एक आदमी है जो हाथ डाल रहा है जिसने पि पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

इस फोटो में तीन मंदिर दिखाए गए हैं।

और गेट पर कुछ गमले रखे हुए हैं।

और लाल कलर के गमले लगे हुए हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे हैं।

इसमें नीचे बैठने के लिए सीट बनी हुई हैं।

दीवार के ऊपर लाल कलर के गमले रखे हुए हैं जिसमें पौधे लगे हुए हैं।

और साइडों में किनारे पर मिट्टी पड़ी हुई है और मट्टी के ऊपर कुछ पत्थर पड़े हैं।

इस फोटो के अंदर एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

और साइड में एक बड़ा सा गमला है जिसमें एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

एक्यू में कुछ गुलदस्ते लटके हुए हैं।

मेज़े लगी हुई हैं जो गोल्डन कलर की हैं उनके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

उनमें सरिया दिखाई दे रहे हैं और इट लगी हुई हैं।

जिसमें ऊपर छत पर कुछ लाइटें लगी हुई--

और उसके पूछे कुछ लकड़ी की रैक बनी हुई है।

घड़ी की साइड में एक होल्डर लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारी खिड़की अ दरवाजे लगे हुए हैं।

इस पर रखा हुआ है और कुछ छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए है कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

जिस पर कुछ छोटी छोटी मूर्ति रखी हुई हैं।

इसमें कुछ लाइट लगी हुई है सामने एक शीशे का दरवाजा है।

उन पर सफेद कलर की कलस्ती रखी हुई है।